बग़ल मे एक घर है जो भूरे रंग की है एक सामने जो सफ़ेद रंग की है।

पीछे साइड पे कुछ टाट रखे हुए जो हरे रंग की और गुलाबी रंग की संतरे रंग की ट्राट रखी हुई है और ब्लू रंग की है।

सामने एक प्लेटफार्म है जो एक पटरी पर एक ट्रैन जा रही है कुछ उसमें पटरी रखे गए है अगल बग़ल प्लेटफार्म में कुर्सी लगाई गई है जो कुर्सी अभी खाली है कोई नहीं बैठा हुआ है छोटी छतरी लगाया गए है।

सामने एक बैंक है जिस पे प-- पोस्टर लगा हुआ ऊपर की साइड पे पिले और भटरंगी रंग के और छत के बॉर्डर में एक लाल रंग की एक पट्टी लगी हुई है तीन ऐ. सी. लगी हुई है।

जिसपे फूल लगाया गया है लाल रंग का हरे रंग की पट्टी सजावट की गई है सामने एक साइड पर काउंटर रखा हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सारे आदमी खड़े हुए है काउंटर बनाया गया जो है जिस के अंदर आदमी है।

एक रोड गया हुआ है उस के सामने एक जो कार खड़ी है सफेद रंग की सामने से एक बाइक आ रही है।

बगल में एक बोट है जो की गुलाबी रंग का है सामने एक साइड पे भी एक गुलाबी रंग का बोट है और जिस से बोटिंग कर रहे है ओरेंज रंग की है।

दो सफेद लाइट लगी हुई है बोहत सारा कुर्सी लगी हुई हैं जो लाल रंग की खुरसी हैं एक सामने बड़ा सा पर्दा लगा जो सफेद रंग का हैं।

कुछ पोस्टर लगे हुए हैं सामने बोहत सामने बहुत सारा गाड़ी खड़ी हुई हैं जो काळा रंग की और लाल रंग की गाड़ी हैं सामने एक आदमी अंदर जा रहा है उसने सफेद रंग का शर्ट पहने हुए हैं ।